दुकान के सामने एक पेड़ भी उल्टा खड़ा है।

इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं।

ये तस्वीर किसी दरजगाह के अंदर की है जहां बहोत बच्चे बैठे हुए हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं।

एक वाटर पार्क की तस्वीर है यहां पर पानी भी रखा हुआ है।

पाथ भी बना के है जहां पर बैठने के लिए दो अ टेबल जैसे बनाई हुई हैं।

गेट भी नजर आ रहा है बड़ा सा गेट है जो नीले रंग का है।

सामने कुछ गाड़ियां भी है और मोटरसाइकल भी।

रेड कलर का एक बड़ा सा पोस्टर है जिस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।